और दिवाल लाल रंग के है आस पास पेड़ पौधे और घर नजर आ रहे--

और बाएं साइड में स्मार्ट टी_वी भी रखी हुई है।

या जो कि ला व्हाइट कलर का है जहां बाउंड्री लाल कलर के लगे हुए हैं।

हरे रंग की में डिजाइन की गई हुईं हैं।

जैसा कि आप देख सकते हैं ये खाली हॉल है जिसकी सीलिंग हल्की गुलाबी और सफेद रंग की हैं।

जैसा की आप देख सकते हैं यहां पे एक मशीन लगा हुआ है सफेद रंग का।